ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना है एक और सेल्फी ले रहा है।

और यहाँ वाइट कलर का कार दिख रहा हैं।

यह एक रिक्शा है रिक्शा पीला कलर का है| .

एक वाइट कलर का सेट है और एक --

यहाँ एक मैदान दिख रहा हैं।

डॉक्टर अबुल कलाम --

और मैदान के चारों बगल हरा कलर का --